चार गाड़ियाँ खड़ी हैं बैटरी वाली चारों का कलर अलग एक लाइट ब्लू है एक का डार्क ब्लू है एक का लाल कलर है और एक का हरा कलर है।

एक जगह है जो कि बोहोत कलरफुल है । एक बोहोत बड़ा घर है । जिसपे बोहोत सारी खिड़कियाँ हैं अलग-अलग तरीके की ।

यहाँ एक फोटो है जहाँ पीछे एक पोल है जिसपे बड़ा सा व्हाइट कलर का पोस्टर रखा है भारत स्टेट बैंक का उसमें दो चेयर पे एक अंकल और एक आंटी बैठे हुए हैं साइड में एक टी-शर्ट दिख रही है ब्लू कलर की एक इंसान का हाथ दिख रहा उसका बैग का हैंडल दिख रहा --

एक शॉप है जिसके साइड में चप्पलों का पोस्टर लगा हुआ हैं और उसके साइड में एक पोस्टर लगा है रेड कलर का जिसपे एयरटेल लिखा हुआ है उसके ऊपर गृ एक खिड़की दिख रही है और एक गेट दिख रहा है।